और जो डेकोरेशन वो तो ए वन क्लास है कती लाइटिंग का सिस्टम बढ़िया है इनका डी_जे साउंड बहुत बढ़िया है टेबल कतई साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ।

देखो भाईयों ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ में घर है जिस घर में ते वीडियो शूट कर रहे है जिसने फोटो ली है।

और मौसम थोड़ा खराब है इस मारे बेचारे पेड़ भी मर जा रहे हैं।

पेड़ काटने ते वैसे भी कानूनी जुर्म है पर कौन माने है और अगर ये शमशान घाट है तो फिर इसमे तो लकड़ी की जरूरत बिना ही मांगे भी भगवान दबादे है।

टैक्टर है पेड़ है और शेम ही एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखे है।

अर जो पेड़ पौधे हैं ये तो बहोत जरूरी है आज के टाइम मे पेड़ पौधे लगाणे चाहिए।

यह छोरा पानी पीने लाग रह्या है बाड़ा की तरह खड़े हो गए और बाड़ा के कलर कितने बढ़िया कर रखे हैं कितना शांत है।

यो योगा करन की जगह है। पार्क में जिथ सारे लोग कट्ठे होके आपने योगा करन लाग रहे हैं देख लो।

आगे वाला देखो वेटिंग मे कर रेया है क्योकि जाम इतना लगा हुआ है ट्रैफिक इतनी है।

देखो ये फोटो किसी महेल या रानी महेल पुराने जमाने में होया करती उनकी फोटो है कोई देखो एक तरफ से इसमें चढन का रस्ता है।

छोटी छोटी खिड़की सी बन रही है कितना प्यारा महल का डिजाइन है देखो और सफाई कितनी है इसमें--

आपने इस मामूल की आइसक्रीम ब्रांड की हर एक चीज की इसमें मिलेगी वैरायटी आपने--

क्यू_आर कोड भी है आप बैठे बैठे अपने टेबल से आर्डर करके खाना खाके क्यू_आर कोड पे पेमेंट कर सकते हो हर एक टेबल पे इसमें अचार के डिब्बे रखे हैं।

टोल कुछ ऑनलाइन में होंगे जो ऑनलाइन वाले हुऐ वो जल्दी काट दि है अपनी गाडी ने--